यहां हम देख सकते हैं कि एक मेला लगा हुआ है जिसमें काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है।

इस एरिये में बहोत ही भीड़ भाड़ हम देख सकते है।

जिसे हम मोबाइल फोन का टावर बोल सकते हैं नेटवर्क का टावर बोल सकते हैं यहां पर एक रस्सी भी बंधी हुई है।